बिछा हुआ है दो लोग दिखाई दे रहे है सामने ये पूरा लॉज अ रंगीन कलरफूल कपड़ों से और अ --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

एक स्टेडियम का दृश्य है जिसमे हरी - हरी घास दिखाई दे रही है हलोजेन लाइट लगी हुई है।

लगी हुई है सब खिड़कियां दिखाई दे रही हैजहाँ पर शीशे लगे हुए है फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर कुछ जो की लाल कलर की है उसके आगे मेज पड़ी है मेज पर--

ऊपर एक बोर्ड लगा है जो की नीले रंग का है उसपे सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही है निचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहाँ पर --

ये एक क्राउन का दृश्य है जिसमे कई सारी मेट डॉक खड़ी है जो की सफ़ेद रंग की है पीछे की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी छत दिखाई दे रही है।

एक ऑटो खड़ा हुआ है जो काले रंग का है आसपास कई सारे लोग खड़े है जिनका सामान निचे पर्श पर रखा हुआ है।

कुछ सामान लटका हुआ दिखाई दे रहा है एक जाली की टोंकरी रखी है जिस पर अलग - अलग रंग के कपडे रखे हुए है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की जिसकी छत दिखाई दे रही है खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की पे --